और पीछे से इसको फोटो को कैप्चर किया गया है आई थिंक ये एक हाईवे है हाईवे के ऊपर ट्रक जो है जा रहै हैं और पीछे से इस फोटो को कैप्चर किया गया है और जो हाईवे है वह काफी अच्छा है।